यहाँ पे एक मैजिक भी खड़ा है यह मैजिक में डी.जे. और चोंगे लगाए गए है।

वजन को काम करने के लिए जिम में आते हैं।

आइब्रो बनाते हैं मेकअप करते हैं फेशियल करते हैं।

इस कार्यक्रम में बहुत सारे आदमी आये हुऐ --